एक लकड़ी के कपड़ों का स्टैंड या हैंगर भी दिख रहा रहा है।

तस्वीर के राइट कॉर्नर में एक ऑटो रिक्शा जा रहे हैं जि --

ये एक बड़ा सा मैदान है जिसमें कुछ जगह घास है और कुछ जगह कीचड़ है।

अंदर में एक रेड कारपेट बिछाया गया है।

सेंटर में एक डिजाइन लाइट --

इस तस्वीर में एक मोबाइल नेटवर्क सर्विस सेंटर दिख रहा है जो आईडिया फोर जी का शोरूम लगता है।

आदमी एक टेबल पर बैठा हुआ है और ड्राइंग और डिजाइनिंग का काम कर रहा है।

बोर्ड पर पीले रंग से गोडेस नानी रुक्मणी लिखा हुआ है।

गेट के डिजाइन गोल आर शेप में है जो रंग बिरंगे फूलों और लाल पीला दिल के कट आउट से सजाया है।

नीचे की तरफ अलग अलग साइज और प्रजाति की मछलियां दिख रहे हैं।

मॉल के अंदर लेफ्ट साइड ट्रेडिशनल कपड़े लटके हुए हैं।

बीच में कलरफुल कपड़ों से सजा हुआ एरिया भी है।

उसके आसपास के लोगों ने सफेद रोग पहना है।

मकान के पीछे बहुत सारे तांबूल के पेड़ हैं।

कुर्सी और टेबुल अलग अलग रंगों का हैं जैसे हरा सफेद लाल और नारंगी।

दो तीन लोग खड़े दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने कुछ लोग खड़े हैं एक आदमी गेट के पास है।

इस तस्वीर में हमें एक अमूल स्टोर दिख रहा है जो एक मॉडल और अट्रैक्टिव सेटअप के साथ बना हुआ है।

औरत लाल साड़ी में है उसके साथ तीन छोटे छोटे बच्चे भी हैं।

और ब्रिज के पीछे की तरफ कई सारे इमारत हैं।

पेड़ के नीचे दो नीला कलर के प्लास्टिक ड्रम रखे हुए हैं।

गेट के पास दो लोग बाइक में जा रहे हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा हाउस टावर दिख रहा है जो चार सफेद पिलर्स पर खरा है।

दोनों तरफ हरी भरी पहाड़ियां हैं।

ये एक चर्च का हॉल लग रहा है जहां लोग बेंचेस पर बैठे हुए हैं।

साइड वॉल्स पर लंबे कलर ग्लास विंडोस हैं।

राइट साइड में एक नया और मॉडर्न फुट ओवरब्रिज बना हुआ है।